नजर आ रहा है यहाँ पे खुला आसमान नजर आ रहा है जो कि बोहोत अ --

यहां पर एक वी बाजार दाम कम फैशन हर दम लिखा हुआ है यहां पर मॉल बना हुआ है यहां पर कपड़े मिलते हैं।

यहाँ पर बच्चो के बड़ों के छोटो के बुड्ढों के सबके कपड़े मिलते हैं।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा गार्डन दिखाई दे रहा है | गार्डन में घर बने हुए हैं।

यहां पर ये बोहोत बड़ा स्टेज दिखाई दे रही रहा है यहां पर एक स्टेज बना हुआ है ये स्टेज बोहोत अच्छा--

यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑफिस बना हुआ है यहाँ पर कुर्सी लगी हुई है यहाँ पर कंप्युटर रखा हुआ है यहाँ पर लैम्प जल रहे हैं। यहाँ पर लाइटें लगी--

यहाँ पर गार्डन बना हुआ है | यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर आस--